इस पिक्चर में हमें बहुत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमे एक ग्रीन बोर्ड पर--

यहां पर हमें आस पास बहुत सारी पेड़ भी नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारी पिक्स नजर आ रही हैं।

येलो ऑरेंज कलर की बैलूंस के साथ डेकोरेशन की गई दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें व्हाइट कलर की कार्स भी नजर आ रही हैं।

हमें दूर से और भी लाइट --

तेल की सीसीया भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर पर हमें एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर पर हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड नज़र आ रहा है।

यहां पर हमें बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस रिसोर्ट का नाम का डिनिया रिसोर्ट है।

इस पिक्चर पर हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।